को एक कार वॉश सेंटर है यहां पे कार वॉश के लिए मशीन रख रखी है और यह थोड़ा ओल्ड ओल्ड सा लग रहा है और यहां पे वॉल्स हैं छोटी-छोटी एंड एक टैप है और एक कार है एंड --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

इस पिक्चर में एक सलून दिखाई दे रहा है उसके सामने कुछ बाइक्स दिखाई दे रही हैं सलोन के अंदर लोग दिखाई दे रहे हैं और उसके बाहर भी कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं सीढ़ियां हैं और वॉल्स दिखाई दे रही हैं।